पहने हो काले कलर की पैंट पेहने हो गछ गमछा सर में बांधे हो जमीन सिर प--

जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे यूपीएससी की नोट्स लिखे है काले से एक ब एक --

कलर किया है रंग किया और यहाँ पर क्यारी भी बनी है सड़क भी है स्लेटी रंग की है और यहाँ पर पर बहुत सारी जो घर है खिड़की--

पेड़ भी लगे है हरे रंग के पेड़ भी है और साइकलें भी है।

यहाँ पे झूले जो है वो रंग बिरंगे काले नीले लाल नी --

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे एक ग्राउंड है जिसमे हरी-हरी घासें लगी हुए है पीछे कपड़े भी टंगे हुए है यहाँ पे एक वाइट रंग की बिल्डिंग भी है और क--

जैसा कि मैं देख पा रही ये एक बुक स्टोर यहाँ पे बहुत सारी बुक्स और यहाँ पे कलैंडर भी लगे हुए है एक --

अ ए कथक करता हुआ एक माइक भी--

एक हरे रंग का पोस्टर जिसमे वाइट रंग से लिखा गया हुआ है।